जिसके ऊपर एक लाइट जल रही है और लिखा हुआ है राम जानकी मंदिर कृष्ण कॉलोनी --

और एक बच्ची सरस्वती मां बनी है बाकी के बच्चे हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लिए हुए बैठ के नृत्य कर रहे हैं।

झरने से अच्छा पानी गिर रहा है और झरने के किनारे किनारे बड़े बड़े हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मछलियों के ऊपर चार पांच सफेद रंग की लाइटें लगी हुई हैं और बगल में भी मछली की ही दुकान है।

उद्यान के किनारे की ओर दो बच्चे खड़े हैं।

दिया गया चित्र एक फैक्ट्री का है जिसमें कुछ सामान बन रहा है दो व्यक्ति मशीन के अंदर आटे जैसा कुछ डाल रहे हैं।

और मशीन चालू है एक कंटेनर सा दूर रखा हुआ है।

और जो रेस्टोरेंट है उसका रंग लाल रंग से सज्जित है।

दिया गया चित्र एक चर्च का है जिसके पीछे प्लस का साइन बना हुआ है आगे एक--

घर के अंदर कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं और ऊपर की ओर एक ए_सी लगा हुआ है।

ढेर सारे हरे भरे पेड़-पौधे व पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ऊपर खुला आसमान है और रास्ते पर एक कुत्ता--

ढेर सारे रंग-बिरंगे कपड़े व बगल में सीढ़ी भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में सहेली साड़ी शोरूम दुकान दिखाया गया है जिसके बाहर कुछ बंडल के कपड़े रखे हुए हैं।

दिया गया चित्र एक रेस्टोरेंट का है जो कि अच्छे से सजा हुआ है जिसमें ढेर सारी लाइट जल रही है।

दिया गया चित्र एक हिंगलार्ज बुक डिपो का है जिसके ऊपर श्री हिंगलार्ज बुक डिपो स्पोर्ट्स स्टेशनरी फोटो कॉपी बुक लिखा हुआ है।

शोरूम के बाहर काफी गाड़ियां खड़ी हैं और दो आदमी खड़े हो के एक मोबाइल देख रहा है दूसरा शोरूम की तरफ देख रहा है।

दिया गया चित्र एक कोचिंग क्लास का है जिसमें ढेर सारे बच्चे बेंच पर बैठे हुए हैं।

और दुकान पे कांच का शटर बना हुआ है।

दिया गया चित्र एक रास्ते का है जिस पे एक आदमी बाइक पे सवार हो के जा रहा है।

बगल में एक बिजली का खंभा भी है जिसके ऊपर से तार गई है वह उसके पीछे दो मंजिला एक बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।

दिया गया चित्र एक जिम का है जिसकी दीवारें हरे रंग की है और ढेर सारे डंबल वह अन्य--

दिए गए चित्र में कुछ लोग लकड़ी को काट रहे हैं और एक नीले रंग का बड़ा मशीन रखा हुआ है दो तीन लोग अंदर की ओर बैठे हुए हैं।